मुझे यहां पर रेल की पटरी दिखाई दे रही हैं।

वहां पर काफी सारे बॉक्स भी रखे दिख रहे हैं।

बोर्ड पर बोम्बे चौपाटी लिखा हुआ दिख रहा है।

माता जी के हाथ में एक त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा दिख रहा है।